सामने एक स्कूल है जो कि वाइट कलर का स्कूल है उसके आसपास बहुत सारी छोटी छोटी हरी भरी घास है।

बगल मे बहुत सारे जमीन जो कि खाली हैं मट्टी हैं उसके बगल में बहुत सारी साइकिल लगाए हुए हैं।

उसके आगे सूखे हुए पेड़ हैं जो कि लिप्टस के हैं।

बगल में कुछ पटरे रखे हुए हैं जो कि व्हाइट कलर के हैं।

पास में एक स्टील का रोड रखा हुआ है उसके सामने एक मिरर लगाया हुआ है।

सामने बहुत सारे गेंदे के फूल रखे गए हैं।

आस पास बहोत सारे कांच के डब्बे बनाए गए हैं।

सामने में एक ड्रावर है बनाया गया बगल में एक गेट है जो कि बंद है।

सामने एक झील है जिसमें बहुत ज्यादा पानी जमा हुआ है।

ऊपर में बहुत सारे इनवर्टर के बैटरी रखे हुए हैं।

पास में एक बोर्ड है जो की ब्लू कलर का है।

उसके बगल में एक रेड कलर का घर है जिसका ग्रिल का कलर ब्लैक है उसके--

के बगल में मां विंध्याचल कृषि केंद्र लिखा हुआ है।

उसके बगल में एक और दुकान है जिसका शटर खुला है जो कि व्हाइट कलर का है।

के बगल मे पिंक कलर की और सामने जो दीवार है वो वाइट कलर का है।

पास में जो है व्हाइट कलर का है बगल में बहुत सारे पोस्टर टांगे हुए--

बगल में दो बच्चे खड़े हैं एक ने जोकि जिसने ग्रीन कलर का स्वेटर --

उसके ऊपर बहोत सारे गेंदे के फूल लगाए हुए हैं जो की ऑरेंज कलर के हैं और पीले कलर के फूल लगाए गए।

पास में जो व्यक्ति है वो पिंक कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का जैकेट और चेहरे पर मोफलर बांधे हुए है और ब्लैक कलर का जींस पहना हुआ --

यह एक ज्वेलरी की दुकान है जिसमें बहुत सारी व्हाइट कलर की लाइटें लगाई हुई है ऊपर में एक सी_सी_टी_वी कैमरा लगाया गया है।

सामने जो दीवार है ओ वाइट और ब्लैक कलर की है सामने सीमेंट से कुछ पुचारा किया गया है।

जो कि पीले कलर की लाल कलर की ब्लू कलर की और ब्लैक कलर की है।

इधर में सभी दीवाल जो की वाइट कलर के हैं।

सामने बहुत सारी रॉड टांगी हुई है जिसके नीचे बहुत सारा सीमेंट है।

सामने ट्रैक्टर का पीछे वाला पार्ट रखा गया है।

जिसमे ग्रीन कलर की काई जमी हुई है।

आसपास बहुत सारे झालर मालर टपकाए हुए है।

और महिला जो की रेड कलर का साड़ी पहनी हुई है और ब्लैक कलर का ब्लाउज पहनी हुई है।

रेड कलर का सामने एक टेंपो लगा हुआ है उसके बगल में एक ब्लू कलर का स्कूटी लगा हुआ है।

बगल में वाइट पिंक नीला ग्रीन ब्लैक और भी बहुत कलर ।

ब्लू कलर का जूता पहना हुआ और हाथ में घड़ी पहना हुआ है।

और एक जिसने रेड कलर का सूट पहना हुआ है पास में बहोत सारे बच्चे हैं।